attributes पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे परमाणुओं रेसीड्यूज़ और मॉडल्स के ऐट्रिब्यूट्स बदलना
bfactor वैल्यूज़ के आधार पर एक प्रोटीन में परमाणुओं को रंग करना
kdhydrophobicity वैल्यूज़ के आदर पर रेसीड्यूज़ को रंग करना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको chimera इंटरफ़ेस से परिचित होना चाहिए यदि नहीं हैं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रेकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu os वर्जन 1404 chimera वर्जन 1102 mozilla firefox ब्राउज़र 420 और एक कारकरी इन्टरनेट कनेक्शन
यहाँ मैंने एक chimera विंडो खोली है
कमांड लाइन उपयोग करके leucine zipper का स्ट्रक्चर खोलें
कमांड टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें open 1zik एंटर दबाएँ
पैनल पर मॉडल ribbons की तरह दिखता है
presets मेन्यू उपयोग करके डिस्प्ले को interactive 2 में बदलें
जल अणुओं को छिपाने के लिए कमांड लाइन पर टाइप करें delete solvent एंटर दबाएँ
डिस्प्ले को स्टिक्स में बदलने के लिए टाइप करें rep stick एंटर दबाएँ
स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए टाइप करें addh
अब हम सीखते हैं लिंक इस स्ट्रक्चर के लिए atoms और residues के ऐट्रिब्यूट्स को कैसे बदलते हैं
attributes नामों और वैल्यूज़ के साथ विशेषताएं होते हैं
chimera में आइटम्स जैसे atoms bonds residues और molecule models ऐट्रिब्यूट्स रखते हैं
attributes को बदलने के लिए भिन्नभिन्न तरीके हैं
favorites मेन्यू उपयोग करके model panel खोलें
स्क्रीन पर model panel डायलॉग बॉक्स खुलता है
पैनल के दायीं तरफ attributes बटन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर 1zik के लिए attributes डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग बॉक्स attribute सूची रखता है
सूची molecule attributes और इसके कंपोनेंट्स atom bond और residue attributes रखती है
molecule attributes चुनें
उपलब्ध attributes विंडो पर सूचीबद्ध हैं
उदाहरण के लिए – एरोमेटिक रिंग्स के डिस्प्ले को बदलने के लिए aromatic display के आगे वाले बटन पर क्लिक करें
ड्रापडाउन से true चुनें
aromatic ring style में disk चुनें
aromatic color के आगे वाले color well पर क्लिक करें
color editor से रंग चुनें
dialog box बंद करें
पैनल का निरिक्षण करें सभी aromatic rings केंद्र में डिस्क्स के साथ दिखती हैं
स्ट्रक्चर के डिस्प्ले को ball and stick में बदलें
कमांड लाइन पर टाइप करें rep bs
attributes डायलॉग बॉक्स पर परमाणुओं की van der walls radii बदलें
ball scale की वैल्यू बदलकर 05 करें एंटर दबाएँ
पैनल का निरिक्षण करें परमाणु बहुत बड़े परमाण्विक रेडिआई के साथ दिखते हैं
molecular attributes चेक बॉक्स पर दोबारा क्लिक करें
सूची से component atom attributes पर क्लिक करें
तत्स्थानी विंडो में atom style button पर क्लिक करें
ड्राप डाउन मेन्यू में बहुत से विकल्प हैं
डिस्प्ले को cpk में बदलने के लिए sphere पर क्लिक करें
पैनल का निरिक्षण करें
डिस्प्ले में वापस जाने के लिए dot चुनें
अब component bond attributes पर क्लिक करें
यहाँ bond style को stick या wire में बदलने के लिए विकल्प हैं
component residue attributes पर क्लिक करें
यहाँ रिबन के ऐट्रिब्यूट्स बदलने के लिए हमारे पास विकल्प हैं
presets मेन्यू उपयोग करके पैनल पर स्ट्रक्चर के डिस्प्ले को ribbons में बदलें
अब attribute डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें
attribute डायलॉग बॉक्स में ribbon color के आगे वाले color well पर क्लिक करें रिबन कलर को चुनें
color editor को बंद करने के लिए close पर क्लिक करें
ribbon और scaling के क्रॉससेक्शन अनुप्रस्थ काट को बदलने के लिए विकल्प हैं
dialog box बंद करें
presets मेन्यू उपयोग करके दोबारा परमाणुओं के डिस्प्ले को बदलें
tools मेन्यू उपयोग करके attributes को बदला जा सकता है
tools मेन्यू पर क्लिक करें structure analysis तक नीचे जाएँ
और सबमेन्यू से render by attribute विकल्प चुनें
render by attribute डायलॉग बॉक्स खुलता है
यहाँ atoms residues molecules segmentation regions आदि के ऐट्रिब्यूट्स बदलने के लिए विकल्प हैं
atoms चुनें render पर क्लिक करें
उपलब्ध विकल्पों की जाँच के लिए attribute सूची पर क्लिक करें
सूची दो विकल्प दिखाती है: bfactor और occupancy
ये दो ऐट्रिब्यूट्स इनपुट pdb फाइल से पढ़े जा सकते हैं
bfactor चुनें
रंगीन उर्ध्वाधर बार्स के साथ वैल्यूज़ का एक हिस्टोग्राम दिखेगा
bfactor वैल्यूज़ मैक्रोमॉलिक्यूल्स में गतिशीलता की माप देती हैं
कम bfactor वैल्यूज़ के पामाणु स्ट्रक्चर का भाग जो सुव्यवस्थित है से सम्बंधित हैं
बड़े bfactor वैल्यूज़ के पामाणु स्ट्रक्चर का भाग जो बहुत लचीला है से सम्बंधित हैं
प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए pdb फाइल bfactor जानकारी रखती है
पैनल पर वापस आएं
उर्ध्वाधर बार्स माउस से हिस्टोग्राम के साथ ड्रैग की जा सकती हैं
bfactor की वैल्यू value टेक्स्ट बॉक्स में दिखती है
नीली उर्ध्वाधर बार को ज़ीरो तक लाल को 100 तक ड्रैग करें
फिर सफ़ेद बार को 50 पर फिक्स करें
colors बटन पर क्लिक करें
color atoms keep opaque और color surfaces विकल्पों को चेक करें
डिफ़ॉल्ट कलर palette blue और red है
आप कलर palette को ड्रापडाउन से बदल सकते हैं
apply button पर click करें
पैनल का निरिक्षण करें बड़े bfactor वाले परमाणु लाल में और कम वाले नीले में दिखते हैं
अपेक्षित की तरह बड़े bfactors के परमाणु स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ हैं
अब रेसीड्यूज़ के ऐट्रिब्यूट्स को बदलते हैं
select by attribute डायलॉग बॉक्स में attributes बटन पर क्लिक करें
ड्राप डाउन से residues चुनें
render पर क्लिक करें
रेसीड्यूज़ के लिए वो ऐट्रिब्यूट्स kdhydrophobicity scale रखते हैं
ड्राप डाउन मेन्यू से kdhydrophobicity पर क्लिक करें
हिस्टोग्राम में वैल्यूज़ दिखती हैं
kdhydrophobicity scales वो वैल्यूज़ हैं जो एमिनो एसिड रेसीड्यूज़ की रिलेटिव hydrophobicity परिभाषित करती हैं
kdhydrophobicity वैल्यूज़ hydrophobic residues के लिए पॉज़िटिव और polar residues के लिए नेगेटिव होती हैं
रेसीड्यूज़ की hydrophobicity colors या worms में देखी जा सकती है
colors चुनें डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ पैरामीटर्स चयनित हैं
apply बटन पर क्लिक करें पैनल का निरिक्षण करें
hydrophobic residues का रंग लाल और polar residues का रंग नीला होता है
worms बटन पर क्लिक करें apply पर क्लिक करें
पैनल का निरिक्षण करें
worms संशोधित रिबन्स हैं जिनकी रेडियस त्रिज्या परिवर्तित होती है
अधिकतर hydrophobic residues स्ट्रक्चर के अन्दर की तरफ होते हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से ज़्यादा hydrophobic residues बड़ी रेडियस के दिखेंगे
स्ट्रक्चर को सामान्य ribbon में वापस जाने के लिए
wormstyle पर क्लिक करें और nonworm विकल्प चुनें
ok button पर click करें
file मेन्यू उपयोग करके chimera सेशन बंद करें
इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा परमाणुओं रेसीड्यूज़ और मॉडल्स के ऐट्रिब्यूट्स को बदलना
bfactor वैल्यूज़ के आधार पर प्रोटीन में परमाणुओं को कलर करना
kdhydrophobicity वैल्यूज़ के आधार पर रेसीड्यूज़ को कलर करना
नियत कार्य में पैनल पर hemoglobin pdb code: 2hco का मॉडल खोलें bfactor वैल्यूज़ के आधार पर परमाणुओं को कलर करें
kdhydrophobicity वैल्यूज़ के आधार पर रेसीड्यूज़ को कलर करें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
हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित हैमैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद